वह ऐसा लगता है यह बहुत कम ही देखने को मिलते हेंगे। और इसको एक पिंजरे में रखा गया है। जो ई स्टील का बना हुआ है। अंदर एक डाली रखी हुई है उसमे बैठा है।

यह बहुत ही अजीब पंछी है और यह सिर्फ जू में ही देखने को मिलते है यह से अजीब तरह के पंछी और जानवर--

और यह बहत ही अलग ही टाइप के हैं इनकी गर्दन बहत नीली है उसमें गुलाबी टाइप की भी है काफी बड़े-बड़े पंख हेंगे ईनके काफी यूनिक पंछि हे यह।

यह एक जू हे गा। और जो जू मे एक वाघ है गा और यह वाघ काफी बड़ा हैगा और यहां पे इसको एक अलग ए काफी बड़ी एरिया में रखा गया है।

यहाँ पर एक पिंजरा है पिंजरे में एक पंछी रहेगा जो येलो कलर का और आसमानी कलर का हेगा।

पीला सफेद बेगानी ऑरेंज कलर की ऑरें फूलों के पास एक आदमी भी खड़ा है और एक चेआर रखी हुई है।

इस तरह से रखी हुई है और लाइन से बैठे हुए है तराजू रखा हुआ उनके पास बोरी रखी हुई है और सामने आदमी लोग खड़े हुए है जो मछलियां खरीद रहे है।

यहां पर जिम है। यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है जो अपनी बॉडी बनाए हुए है बॉडी दिख रहा है रेड कलर की जैकेट पहने।